लाल कलर के पर्दे लगे हुए हैं। ऊपर पंखे लगे हुए है। एक घड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है।

ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स का बैनर लगा हुआ है।

हम सामने से देख सकते हैं कि यहाँ पे रेल की पटरियाँ हैं जिसपर लोहे की --

दुकान का एड्रेस लिखा हुआ है।

ये जिसमें से पानी निकल रहा है।

इस फोटो को देख कर लगता है कि यहाँ पर कुछ एक बेंच पर बैठे हुए एक दादाजी और एक दादी किसी का इंतजार करते हुए लग रहे है।